यहां पे हमारे को जो फोटो दिखाई जा रही है वह चंडीगढ़ ग्रुप आफ कॉलेज की

और उसके ऊपर हम लोग का बना पड़ा है और उसके बगल में हमारे पास एक्सिस बैंक का ए_टी_एम कार्ड है और बगल में हमारे पास एक--

ये फोटो अगर हमको दिखाई जा रही है जो की एक बार की है जिसमे बोहोत तरह तरह के दरुऐ है ।

इसमें एक बी_पी की है और एक अपने पास वेलेंटाइन की हैं और यहां पे तरह तरह के लोग यह पे पिनेआये है।

बीस परसेंट लेडीज के सूट पे मिलरा है उनको रेडिमेंट कर्टन मिलता है बुल्सेट रेट पे--

और यहाॅं पे इलेक्ट्रिकल ब्ल अ ब्लैंकेट मिलती हैं जो की होती हैं कम--

यह हमको जो फोटो दिखा रही है ये पता नहीं कोई कंप बहुत बड़ी बिल्डिंग की है और उसके साथ में बहुत सारी कार लगी हुई है।

ये हम को एक पोलिग्रींस का दिखाया हुआ है जो बोर्ड जो की --

का एक बिल्डिंग के तरफ दिखा रहा है और वहां पे गेट खुली हुई है दोनों तरफ से--

ये हमको एक एस_बी_आई बैंक का दिखाया जा रहा है उसके पास हमको गोल्ड लोन का भी सुविधा दिया जा रहा है और एक अंकल मस्त साइकिल से जा रहे है और आंटीया वह पर खड़ी हुई है ।

उसके पीछे हम को और कारे मिल रही है और--

यह फोटो वहाँ पे दिखाई जा रहा है मंदिर के जहा पे एक आदमी आ रहा है और एक आदमी जा रहा है और वहाँ पे एक पंडितजी बेठे हुए है।

यहां आपको टेबल लगा हुआ है जहां पे लोग भुक्कड़ के तरह खाना खाते हैं और उसके जस्ट बगल में--

हमको एक फोटो दिखाई जा रही है एक दुकान कि जिसमे बहोत अच्छे अच्छे तरह के पेन्टिंग बनी पड़ी है चेयर लगे पड़ ए है।

यहां पे एक लड़का खड़ा हुआ है जो की सेक्सी बाँदा बनके भाई फोटो खींचा रहा है पता नई क्यों झाट सा सकल है उसका लेकिन इसमें उसको बलौर किया हुआ है ।

यह हमको एक फोटो भगवान कि दिखाई जा रही है जोकि बहोत निराली फोटो है गणेश जी कि और लोग बहोत ज्यादा तरह के लोग खड़े हुए है।

और हमारे रूम में पांच जने रहते है और एक लड़का है वो यह पे कम्बल में बैठा हुआ है ।

ये हमारे सामने अरविंद भाई बैठे हुए हैं जो कि फोन चला रहे हैं और वहां पे खिलजी हैं वो भी अपना बकवास कर रहा--

और हम लोग येही टाइम पास करने के लिए किउकी हम लोग का बाप बेचता लेकिन हम लोग के--

ये हमको दिखाया है दो आदमी कहि जा रहे है और उसके बगल में बहुत बड़े पेड़ है बहुत आलिशान महल वाले पेड़ है ।

हमको ये जो फोटो दिखा री है वो एक हमको बहोत ही--

ये है एक जगह जिसमे लोग योगा कर रहे है और पुष्पा है यहां पे पुष्पा के रहा है अब तुम झुकेगा नहीं साला धरती हो या आसमान योग हो या से --

सुहाग रात हो भाई अपुन झुकेगा नही साला --

क्या बोले इनको की आज कल की बीस साल की लडकिया भी वेसी ही दिखती है दोस्तों--

फोर आठ फोर फोर एट नाइन दोस्तों जोकि हमारे राजधानी अमृतसर से पाकिस्थान जाईगी।

अब पता नही अपनी बीवी को खुस कर पायेगा की नही दोस्तों--

जापे एक आदमी अन्दर जारा है और एक आदमी वहा से गेट खोलते हुए आरा है।

हमको रूम मिला है जोकि एक फोर ऐ_सी वाला है जोकि रूम नही एक अलाहबाद का बैंक है जोकि एक अलाहाबाद है।

इसके बगल में हम को ये चार ए_सी मिली है दोस्तों उसके निचे हम को एक ए_टी_एम बैंक मिला दोस्तों--

एक पेट्रोल पंप का है जिसमे बहुत छेओ पेट्रोल पंप है और यह एक एक्टिवा जा रही है और एक टेम्पू है उसमे पेट्रोल भरा जा रहा है और उसके बगल में दो कारे भी है।

ये हमको किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर मिल रहा है जहाँ पर हमको भगवान की फोटो है सीता मां और विष्णु जी की और हमको यहाँ पे--

यापे एक लिप्ट खुला हुआ है यहा पे तिन पैक है।

यहाँ पे मिक्की माउस है यहाँ पे एक हमको डांसिंग वाला जुला मिल रहा है एक खतरों के खिलाड़ी वाला मिल रहा है।

जो है हमारी बुलेट की कंपनी है वो मिल रही है मनमोहन मोटर एंड एनफील्ड वहां पे हमको बहुत सारियां बुल्ट बुल्ट मिल रही हैं एक बाहर साइकिल खड़ी हुई हैं।

जोकि यहाँ पे हमारे गुरूद्वारे के बाहर बहुत सारी बाइकें हैं टेम्पू हैं एक कार है वाइट कलर की और दो बाइक हैं एक एक्टिवा है।

अरे अपने भगवानो को माथा टेक रहे है।

जगा का दिखाया जारा जहा पे हम कोई इंडियन पोस्ट पेमेंट मैप का मिलरा है जो की सेक्टर चउदा में है।

जीरो जीरो वन फोर है और वो ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है ।

यहां पे हमको बोन ऐ_टी करके दुकान है जिसमें हमको यहां पे उसके फ़ो वहा पे हमको काले कलर का लगा हुआ है एल_इ_डी और गेट है एक --